और ये बिल्डिंग काफी बड़ी नजर आ रही है।

जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यह एक ग्राउंड नजर आ रहा है।

जैसे कि अपन देख पा रहे हैं।

जैसे की अपन देख पा रहें हैं यह एक बोट नजर आ रही है।